और कुछ फूल येलो कलर के है और फूलों के पीछे एक बहोत बड़ा घना जंगल है। एक घर मे हरे-हरे पेड़ है।

पेड़ के पास हन् छोटा स एक न् दरवाजा लगा हुआ है। लक --

यह एक डाक घर है जोकि इसके अंदर एक महिला जा रही है और दो बाइके खड़ी हैं बाहर। एक बाइक से एक आदमी कुछ सामान निकाल रहा है।

बाउंड्री खींची हुई है। बाउंड्री के बाहर से रोड गयी हुई है। रोड के रोड पर छोटी-छोटी घास है। घास और जमीन --

एक कार केयर सेंटर है जोकि उपर लिखा है ब्रह्माश कार केयर सेंटर इसके निचे रेड कलर का लोहे का गेट लगा --

यह एक मकान है जोकि अभी बन रहा है। मकान सब ईंटो की जुराई हो रही है उसके ऊपर एक आदमी बैठा है जोकि मकान बना रहा है।

यह एक बाग है जो कि इसमे हरी हरी छोटी छोटी घास है।

कुछ पेड़ भी लगे हुऐ हैं जिसमें पीले कलर के पत्ते हैं कुछ हरे कलर के पत्ते हैं और कुछ बड़े-बड़े पेड़ हैं और पीछे साइड में कुछ घना जंगल --

यहाँ पर एक तंबू तना हुआ और ब्लू कलर का ऊपर से और ग्रे कलर का है।